और दो नाई है जो उनकी हजामत कर रहे हैं नीचे टाइल्स बीछी हुई है और मिरर में दिख रहा है कि एक आदमी है जो ये तस्वीर खींच रहा है।

पिक्चर में एक नीला रंग का बिल्डिंग है जो दो माले के है उसकी साइड में सीढ़ीयां है सीढ़यो से लोग नीचे उतर रहे है नीचे की तरफ स्टेट बैक का ए_टी_एम है जिसके आगे बोहत बड़ी लाइन लगी हुई है।

बोर्ड ऊपर हिंदुस्तान कांसेप्ट इंग्लिश लिखी हुई है नीचे की तरफ स्कूटर और साइकिल का स्टैंड है स्टैंड क दाहिनी तरफ दो लड़के खड़े हुए हैं बीच के सड़क के सड़क से जाता हुआ एक आदमी जा रहा है जिसने कुरता--